म मंडप बहुत अच्छे से सजाया गया है।

भा लोग कुर्सी पे बैठ के कुछ खा रहे हैं पंख भी ऊपर मे टांगा है बॉल्ब भी लगी हुई है।

इसको बनाने में बोहोत मेहनत लगता है।